यह बिल्डिंग संतरी और क्रीम रंग की हैं।

ऊपर बहुत सारी लाइटें भी जल रही हैं।

ऊपर सफेद रंग के टेंट भी लगे हैं।

रोड पर बहुत सारे ट्रक भी लगे हुए हैं।

यहां पर कुछ लिफाफे भी पड़े हुए हैं।

इस दृश्य में हमें एक जगह दिख रही है।

मंदिर के पास में एक घर भी हैं।

यहां पर एक बहोत बड़ा गार्डन है।

आगे सोफे भी लगे हुए हैं।

इस दृश्य में हमें एक जगह दिख रही है।

इस दृश्य में हमें यह दिख रहा है कि--